गनेश जी की मूर्ति लगी हुई है शंख जैसा दी अ बनाया गया है बहोत सारी मूर्ति बनाई हुई है भगवानों की--

कल मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान हैयहाँ पे मोबाइल रिपेयर किया जाता है।

रेक बनाया हुआ है जिसपे बहुत सारी छोटी फोन बटन वाले फोन --

और हाथ से स्कीन वाले फोन बहोत सारी रखी हुई हैं और बहोत सारी--

एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है हिमालय प्रदेश--

पेड़ लगा हुआ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए और दीवारों से छोटे छोटे घास से निकले हुए नीचे में--

अब पहाड़ों पे बहुत सारे पेड़ पौधे हुए हुए हैं छोटे-छोटा दानियां है साइड में बहुत सारी दानियां हैं।

टैटू का हैं और यहां पे एक आदमी लेटा हुआ--

बेंच रखी हुई है और बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत सारे सामने में--

और इसको बड़ा सा बोर्ड लगा है वेलकम का और बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैं।

एक बहोत बड़ासा सेल एक सैलून है जहां पे--

अंदर में बड़ा सा धूम दे के लाल लाल कलर से घर को रंगा गया है इमारत को--

और एक आदमी जो फोटो ले रहा है उसका दो साथ में आदमी खड़े हैं।

निंबुडा का पुट्टा भी रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ सामान है इसमें और बड़ासा प्लास्टिक रखा हुआ है मेरा सामने में दो तीन--

और बहोत सारी फल फूल की उ टोकरी सूट में भर के रखा हुआ बड़ा सा डलियां रखा हुआ--

स्टनरी मिलता है गिफ्ट आइटम भी है बहुत दुकान है।

एक आदमी एक लेडी एक बच्चा को टान के अंदर लेकर जा रहा है बच्चे के लेडी का दुकान की अलग-अलग तरीके गिफ्ट रखी बुक्स रखी हुई है।

बड़ा सा कंप्यूटर बना है जिसमें बत्ती ल--

ये एक रूम है यहां पे बड़ा सा लगा हुआ लकड़ी का और इस को--

साइड में बड़ा सा एक बाल्टी रखा हुआ है लाल कलर का--

अ फूलों से हार पहनाया गया है मुकुट बनाया गया है और एक लाइन पे बहोत सारे दिए सजाए गए है और आगे भी बहुत सारे दिया जलाया गया है।

बहुत बड़ा सा इमारत बना हुआ है पहाड़ियों के ऊपर पहाड़ियों के ऊपर बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है जहां पे बहुत सारी--

यह बहुत अच्छा सा व्यू घाट व्यू का जहां पे बड़ा सा मंदिर बना हुआ है उसके माथे पे--

और बहुत सारी फ्रिज रखा हुआ टी_वी लगा हुआ है अंदर में वाशिंग मशीन रखी हुई है।

और बहुत सारी समान गले के रखे हुए हैं चूड़ियां रखी हुई है।